जिसपे काफी एशियन पेंट्स का प्राइमर पेंट वगैरा रखा हुआ है।

उसके किनारे एक ट्रक लगा हुआ है और बीच में एक प्यारी सी दुकान है जिसमें काफी लोग काम कर रहे हैं।

दो रोड मिल रही है और रोड के बीच में दो बसें लगी हुई है सफेद कलर की।

जिसमें हरी कलर की डंडी लगी है।

यह एक स्वीट्स एवं स्नेक्स का दुकान है।

यह तस्वीर एक गराज का है जिस गराज में साइड में काफी सारे रैक है।

साइड में कुछ डब्बे भी रखे हुए हैं जो उपयोग में आएंगे काम के दौरान।

इससे यह लगता है कि यह एक शायद पार्किंग लोट है।

फिर से ट्रैकिंग के लिए आगे जा सके और यह बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है।

सभी श्रद्धालु गढ़ इस तस्वीर में मां दुर्गा की पूजा करते हुए दिख रहे हैं।

अ यह एक तस्वीर है जिसमें रोड के किनारे तीन सोने के दिखने वाले गेट दिख रहे हैं और दो डेकोरेशन का आइटम भी है।

लड़की ने हरे कलर का एक साड़ी पहना हुआ है और बालों में गजरा लगाए हुआ है।

यह ऑरेंज कलर का साड़ी पहने हुई है।